और वोट डालना भी हमारा नागरिकों का दायित्व हैं।

इस तस्वीर में रंगोली का समान दिखाई दे रहा हैं।

इसमें एसी की सुविधा दो टेबल एक बेड जिसमें दो लोगों की सोने की गजह और वातावरण कुली --

ऊर्जा और रात्री के समय रोशनी प्रदान करने में मोम का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

और वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है।

पुरातात्विक स्थल जो हिन्दू धर्म के प्रतिष्ठा का केंद्र है।

और इस पर दूल्हा और दुल्हन बैठकर के शादी की रश्म पूरी की जाती है।

और यहाँ पर विश्राम के लिए कुर्सियां भी लगी हुई है।

इसमें बालक और बालिकायें दोनों ही भाग ले रहीं हैं

जो एक वीआईपी होटल है।

इनका उपयोग हम अपने सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत रूप में भी उपयोग करते --

निरीक्षण करने आया है जो विभिन्न गलियों का निरीक्षण कर रहा है।

सामने हिन्दू देवियों की तस्वीर दिकई दे रही हैं।

पर्वतों का एक द्रष्य दीकई दे रहा है।